पत्थरों की रस्ता बनी हुई है इसमें चारों और पेड़ पौधे लगे हुए है दूर्वा भी लगी हुई है बैठने के लिए उचित व्यवस्था भी यहाँ पर--